टेबुल भी लगे हुए हैं जिसका कलर व्हाइट है।

सामने में सोफा लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है और नीचे में चटाई बिछाया हुआ है जिसका कलर रेड और वाइट है।

यह एक दुकान का दृश्य है ।

यहां पर लोहे का मदद से खिड़की भी बनाया गया और शिक्षा का भी मदद से जिसका कलर ब्लैक है।

चेयर भी लगा हुआ है जिसका चेयर का कलर ब्लैक है।

सामने में अथी पर्दा भी लगाया गया है जिसका कलर ब्लू है और सामने में बांस भी गाढ़ा गया है जिसका कलर पीला है।

यह एक अस्पताल का दृश्य है।

यहां लोहे का भी मदद से भी बनाया गया है।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

यहां पर कपड़े भी फेंके हुए हैं और यहां पर वाइट और ब्लैक कलर का है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

सामने में मट्टी भी दिख रहा है और सामने में एक झोपड़ी भी है।

सामने में बहुत अनेक तरह के शीशा लगाए गए हैं।

यहां पर बहुत सारा आदमी लोग खड़े हैं और पूजा करने जा रहे हैं ।

करकट लगाया गया है जिसका कलर व्हाइट है।

यहां पर बहुत सारे आदमी लोग छत ढलाई कर रहे हैं और एक आदमी हाथ में कुदारी लिए हुए हैं।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे आदमी लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर एक बाइक भी लगा हुआ है।

नीचे में बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे कुर्सी भी है जिस पर आदमी लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं जिसका कलर है पीला।

घास फूस भी लगे हुए हैं और पेड़ भी है और नीचे के साइड बहुत सारा पानी भी दिख रहे हैं।

यहां पर कार लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट और ब्लैक में है।

सामने में बहुत सारे टेबुल भी लगे हुए है।

टेबल भी है एक चूलर है और लकड़ी की मदद से बनाया गया है।

सामने में दीवाल है जिसका कलर व्हाइट है।

यहां पर खिड़की भी है।